और पीछे एक पार्क भी बनाया गया है जहां आराम से बैठ सकते हैं और पास में ये शायद ये एक बंद रास्ता है जहां पर हम शायद काफी सालों से नहीं गए ऐसा दर्शाया गया है।

यह एक दुकान है जिस जोकि डिजायर है| संजीव रेडीमेड एण्ड जनरल स्टोर है| ये जनरल स्टोर के साथ साथ ये रेडीमेड गारमेंट तीन तरह का काम करते हैं| ये बैग्स का काम भी करते है।

चित्र में दिखाया गया है नीचे एक हरी भरी घास है और यहां पे थोड़ा सा कूड़ा भी दिखाई दे रहा है। यह एक पीछे की तरफ एक फैक्ट्री बनी गई है जोकि यहां पर काम होता होगा और यहां पर एक दीवार भी दिखाई दे रही है।